के किनारे किले में लोग घुम--

ये गार्डन दिख रहा है यहां पर फुआरा लगा हुआ है फुआरे के नीचे येलो कलर की लाइट दिख रही है।

बहुत सारे लड़के भी दिख रहे हैं जो की ब्लैक कलर की ड्रेस में खड़े हुए हैं रोड दिख रहा है।

चेयर भी रखी हुई है दो चेयर ब्लैक कलर की है एक चेयर ब्लू कलर की रखी हुई है।

फर्नीचर भी बना हुआ है जोकि वाइट कलर का दिख रहा है लाइटिंग भी लगी हुई है ये कांच भी रखा हुआ--

जो कि व्हाइट कलर का है उस पर ब्लैक और व्हाइट कलर का गेट है जो कि दिख रहा है।

अंदर आने का रास्ता है वो वहाँ उस स्टॉप पे बोर्ड लगा हुआ है जो कि जिम लिखा हुआ है।

तार भी दिख रहा हुआ है उस पे रेड और ब्लैक कलर का तार लटक रहा है।

एक लड़की दिख रही है जो की पार्लर में बैठी हुई है चेयर पर बैठी हुई है वो सेल्फी ले रही है।